यहाँ पर दो लड़के खुडे खड़े हुए हैं और ऊपर छत पर गुब्बारे लगे हुए हैं दीवाल पर कुछ ही पेंटिंग लगी हुई उसके पास --

यहा पर कुछ आदमी और औरते बैठी हुई है कुछ औरते खड़ी हुई है पास यहा पर फूलो के गुलदस्ता रखे हुए है उसके पीछे यहा पर बहुत सारे पर्दे अ लगे --

यहाँ पर कुछ लाइटे लगी हुई है लाइटे के पास मे कुछ लगी हुई है वहा पर एक खंबे है यहाँ पर कुछ लोग है।

खड़े हुए है पास मे एक महिला है जिसमे अपने हातमे फूट बॉल ले रखा है पास मे ही बच्ची खड़ी है उसके पास मे एक आदमी खडा हुआ है जो उस उन साइड मे खड़े हुए लोगो कि तरफ देख रहा है उसके पास मे कुछ--